यहां पर पंख खा का बेना है।

सामने घर है इसमें दरवाजा खिड़की लगा हुआ है।

टेबल के ऊपर एक अ अ कपड़ा बिछा हुआ है।

और अंदर में एक लाइटें जल रही हैं नीचे में टाइल्स लगा हुआ है।

यहां पर मंदिर है जिसमें बहुत सारे आदमी हैं।

इसमें बहोत सारा गुब्बारा है गुबारो का रंग ब्लू येलो रेड बैंगनी--

यहां पर बहुत सारे आदमी हैं।

यहां पर कपड़ा का दुकान है जिसमें बहु रंग बिरंगे बहुत सारे उम--

ऊपर में तर लगा हुआ है।

सामने एक घर भी है।

और लोहा का डंडा है।

सामने दो तीन आदमी भी हैम --

छोटा ट्रेन है जिसके बीचो में गमलों में फूल है।

यहां पर बहुत सारे आदमी है बहुत सारे कुर्सियां है टेबल है।

बहुत सारे लाइटे लगी हुई ह--

इसके आगे एक घर है जिसमें दरवाजा खिड़की लगा हुआ है।

फिसल पट्टी है सामने घर भी है पूल है।

एक आइसक्रीम का ठेला है।

यहाँ पर एक मंदिर है जिसमें बहुत मूर्तियां रखी हुई है।